यहाँ पे आप देख सकते है यहाँ पे जे_सी_बी भी जो है यहाँ पे गड्डे खुंड रहे है जो की कुछ गाड़ रहे है देखने मे बहुत ही अच्छा लगता है।

और यहां पे गमला में फूल भी सजा कर रखे हुए है बहुत ही अच्छे दिखने में लगते है और यहां पे बहुत सारी चुकभुकिया लाइट भी लगाए हुए है देखने में बहुत ही सुंदर लगता है काफी सुंदर यहां का नजारा है।

यह देखने में बहुत ही अच्छा लगता है काफी सुंदर देखने में लगता है और यह चटाई है नीचे में बिछाने वाला बहुत ही अच्छा देखने में लगता है।

यहाँ पे आप देख सकते है यहाँ पे मीट माँस का यहाँ पे बाजार लगे हुए है जो की देखने मे बहुत अच्छा लगता है।

जो की देखने में बहोत सारे अच्छे लगते हैं और यहां पे बहुत सारे तेल का टीन रखे हुए देखने में बहुत ही अच्छे हैं।

यह पे आप देख सकते हैं शादी विवाह का फंक्सन है जो की बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सजाए हुए हैं।